उधर की ओर दो आदमी दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर में हमे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें आनंद उत्सव लिखा हुआ है।

पेड़ नजर आ रहा है नीचे माटी नज़र आ रही है।

आदमी मास्क पहना हुआ नजर आ रहा है।

सन पॉलिटेक्निक कॉलेज बस्तर दिखाई दे रहा है।

और एक खड़ा हुआ आदमी हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है।

हैवलस का शोरूम टाइप दिखाई नजर आ रहा है दुकान --

कपड़े टांगे हुए दिखाई दे रहे है।

और एक काला लाल और एक टोपी पहना हुआ दुसरा नज़र आ रहा है।